और बच्चे पेंटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं।

दाना चुगती हुई नजर आ रही है।

यह एक खूंडे से बांधी हुई नजर आ रही है।

आ रहा हैं कुछ बैनर्स नजर आ रहे हैं।

यहां पर बहुत से लोगों की भीड़ नजर--

बहोत से लोग जिनके मुंह पर ब्लर नजर आ रहा है एक झंडा नजर आ रहा है।

साइड में कुछ बॉटल्स नजर आ रही है कुछ बैग्स नजर आ रहे हैं।

आ रहें हैं एक पाइप नजर--

यहां पर कुछ इंजीनियर्स नजर आ रहे हैं।

जो बहुत सुंदर नजर आ रहा है और--

और एक बाइक नजर आ रहे हैं।

यहां पर कुछ लॉकर्स नजर आ रहे हैं एक कुर्सी नजर आ रही है।

कुछ बिल्डिंग्स नगर आ रहे हैं।

यहां पर बहोत से छोटे छोटे मंदिर नजर आ रहे हैं।